ये मैदान का दृश्य है जहां पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे है ये और चारो तरफ नेट का दीवार लगा हुआ है।

यह एक होटल का दृश्य है जिस के आगे एक सीडी लगी हुई है सामने दो व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे है एक रोसेले कलर का शर्ट पहेना हुआ है और एक ने --

और एक आदमी खड़ा है जिसने ब्लू कलर का शर्ट और उजले कलर का दस्ताना और उसने चसमा लगाया हुआ है यह आदमी लेटे हुए आदमी की पैर को ऊपर की और खीच रहा है सामने कुछ बैग रखे हुए है।

यह सामने एक इलेक्ट्रॉनिस का दुकान दिखाई दे रहा है जिसके बहार बहोत छोटे छोटे कार्टून रखे हुए और कुछ स्कूटी कुछ गाड़ी रखी हुई --